जो कुछ नदी में कुछ नदी के बाहर हैं और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

या एक ग्राउंड सा पड़ा हुआ है जिसमें एक पीले कलर का सोफा लकड़ियों वाला पड़ा हुआ तो छोटे छोटे पड़े हुए हैं।

कुछ डब्बो में ही बँटा हुआ है और कुछ रस्सियाँ सफेद कलर की पड़ी हुई हैं।

एक आग बुझाने वाला रखा है और इसमें बहोत टाइल्स चमक चमकदार लगें हुए हैं और एक कांच का दरवाजा भी लगा हुआ है।

और इसमें ये जो जो मैटी जैसी बिछी हु वो हरे कलर और लाल कलर की एक घड़ी भी लगी हुई है।

यहां एक कॉलेज का निर्माण हो रहा है जिसमें बहुत सारे दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ खिड़कियां भी हैं।